पास में एक मेज रखा हुआ नजर आ रहा है।

पास में क्यारी में कुछ फूल भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में हमें पार्क में दो बच्चे खड़े हुएं दिखाई दे रहें हैं।

पास में कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहें हैं।

कुछ लोग सड़क के पास खड़े हैं।

आसपास कुछ पेड़ भीं लगे हुए नज़र आ रहें हैं।

इस दृश्य में हमें एक बुलेट खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

घर के बाहर एक पेड़ लगा हुआ नजर आ रहा है।

इस दृश्य में हमें एक खंभा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग उसे ठीक करने के लिए खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

बाहर गार्डन में बहुत सारे फूड काउंटर्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

आस पास उनके कुछ लोग खड़े हुए नज़र आ रहे हैं।

यह दृश्य हमें किसी डेरी फार्म का नजर आ रहा है।

आसपास बहोत सारे पेड़ लगे हुएं दिखाई दे रहें हैं।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

पास में अलग अलग कमरे बने हुए दिखाई दे रहे हैं।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

इस दृश्य में हमें बहोत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई नजर आ रही है।

इस दृश्य में हमें केबिन में बहोत सारे के--

यह दृश्य हमें किसी सड़क का नजर आ रहा है।

सड़क पर बहोत सारे व्हीकल्स चलते हुए नजर आ रहे हैं।